गली में जो दुकान है जिसके बोर्ड लगा हुआ है सेटर भी लगाया हुआ है।

और वहां पे नंबर भी लिखा हुआ है।

और यहां लाइट पर लगा हुआ है बहोत तरह तरह की मशीन भी है जैसे मिक्सर भी है और भी बहुत कुछ है।

और पूरा कलरफुल लाइट लगा हुआ है और उधर काफी सारे लोग हैं।

जैसे दौड़ने वाला और भी बहुत बहुत सारे तरह का मशीन है।

इस चित्र में मुझे ये बहुत सुंदर तरह से सजाया हुआ पंडाल दिख रहा है जोकी बीच मे से पूरा करके कपड़ा साइड मे पुरा सजाया हुआ है।

यहां पर बहुत सारे लोग हैं कुछ लोग चेयर बैठे कुछ लोग यहां घूम रहे हैं और पूरा ग्रीन कारपेट बिछाया हुआ है यहां पर।

छोटा सा मोट बिछा हुआ है यहां बगल में बेड है।

पूरे बड़ा बड़ा नाव भी दिखाई दे रहा है और और भी बहुत सारे नाव हैं और उधर झंडा भी दिखाई दे रहा है।

और चार चिकन तंदूरी भी रखा हुआ है।

एक छोटा सा पूल भी बनाया हुआ डिजाइनिंग के लिए।

यहाँ टेबल में कॉपी भी रखा हुआ है।

नीचे पूरा टाइल्स लगा हुआ है।